आस पास में टिन की चदरे भी दिखाई दे रही है और एक पीले रंग का ड्रम भी है।

इसके बाहर देखा जाए तो कुछ विद्यार्थी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

यह तस्वीर एक बगीचे की लगाई इ हुई है।

बहोत सुंदर तरीके से सजावट करी हुईं हैं यहां पर कुछ कुर्सियां रखी हुई नजर आ रही हैं उनके ऊपर कुछ व्यक्ति भी बैठे हैं।

बहोत सारे झूले रंग बिरंगे लगाए गए हैं।

इस तस्वीर में मुझे बहुत बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे है।

और उन दीवारो के किनारे में कुछ बड़े बड़े पेड लगे हुए हैं।

बाहर दो व्यक्ति खड़े हुए नज़र आ रहे हैं।

यह तस्वीर एक खेल के मैदान की है।

यहां पर कुछ लाईटों के बड़े-बड़े खंभे भी दिखाई दे रहे है मैदान के चारों और हरियाली है और बड़े-बड़े पेड़ हैं।

प्लेटे भी नजर आ रही है और कुछ सफेद रंग के गमलो में--

वही दूसरी ओर एक खिड़की है और खिड़की में ए_सी भी लगा हुआ है।

यह एक बगीचा है बगीचे में एक कुटिया बनी हुई है जोकि लोहे की टीन की है।

ये कुछ गुलाबी रंग की रंगी हुई है यहां पर एक व्यक्ति--

इस दुकान को अगर देखा जाए तो इसका दरवाजा कांच का है और खिड़कियां भी--

यह तस्वीर किसी कक्षा की लग रही है इस कक्षा में बहोत सारे लकड़ी के मेज रखे हुए हैं।